आप देख सकते हो काफी बड़ा ग्राउंड है जहां पे ये लोग घूमते हुए नज़र आ रहे है वहां पे पेड़ पौधे भी है आप देख सकते है काफी अच्छा नजारा--

नदी के बीच काफी अच्छा नजारा है एक नदी के साइड मे पेड़-पौधे लगे हुए है।

यहापे पेड़ पौधे लगे हुए है ये देखिए काफी बड़ागार्डन है बहुत ही अच्छा लग रहे है।